सी और C में फंक्शन्स पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि फंक्शन क्या है
फंक्शनका सिंटैक्स
रिटर्न स्टेटमेंट का महत्व
हम इसे कुछ उदाहरणों के माध्यम से करेंगे
हम कुछ सामान्य एरर्स और उनके समाधानों को भी देखेंगे
इस ट्यूटोरियल को रिकार्ड करने के लिए मैं उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन 1110 और जीसीसी और g कम्पाइलर वर्जन 461 का उपयोग कर रहा हूँ
फंक्शन्स के परिचय के साथ शुरू करते हैं
फंक्शन एक विशिष्ट कार्य को निष्पादित करने के लिए एक आत्मनिर्भर प्रोग्राम है
प्रत्येक प्रोग्राम में एक या अधिक फंक्शन्स होते हैं
एक बार निष्पादित होने पर कंट्रोल पुनः वहीं लौट जाएगा जहाँ से इसे एक्सेस किया गया था
फंक्शन के लिए सिंटैक्स देखें
ret टाइप उस डेटा के प्रकार को परिभाषित करता है जो फंक्शन से प्राप्त होता है
fun name फंक्शन का नाम परिभाषित करता है
पैरामीटर्स वैरिएबल के नामों और उनके प्रकारों की सूची है
हम एक खाली पैरामीटर सूची निर्दिष्ट कर सकते हैं
ये बिना आर्गुमेंट्स वाले फंक्शन्स कहलाते हैं
और ये आर्गुमेंट्स वाले फंक्शन्स कहलाते हैं
वॉइड का उपयोग करके एक प्रोग्राम देखें
मैंने पहले ही एडिटर पर प्रोग्राम टाइप कर लिया है
अतः मैं इसे खोलूँगा
ध्यान दें कि हमारा फाइलनेम फंक्शन है
और मैंने एक्सटेंटशन c के साथ फाइल सेव की है
मैं कोड समझाता हूँ
यह हमारी हेडर फाइल है
किसी भी फंक्शन का उपयोग करने से पहले इसे परिभाषित किया जाना चाहिए
यहाँ हमने एड नामक एक फंक्शन परिभाषित किया है
ध्यान दें कि एड फंक्शन आर्गुमेंट्स रहित है
और रिटर्न प्रकार वॉइड है
यहाँ दो प्रकार के फंक्शन्स हैं
user डिफाइंड जो कि हमारा एड फंक्शन है और pre डिफाइंड जो कि प्रिंटफ और मैन फंक्शन है
यहाँ हमने आ और ब को 2 और 3 वेल्यू देते हुए आरम्भ किया है
यहाँ हमने वैरिएबल सी घोषित की है
फिर हमa और ब की वेल्यूस को जोड़ते हैं
परिणाम सी में संचित होता है
फिर हम परिणाम को प्रिंट करते हैं
यह हमारा मैन फंक्शन है
यहाँ हम एड फंक्शन दर्शाते हैं
एडिशन ऑपरेशन संचालित होगा और परिणाम प्रिंट हो जाएगा
अब सेव पर क्लिक करें
प्रोग्राम को निष्पादित करें
कृपया Ctrl Alt और ट कीज़ एक साथ दबाकर टर्मिनल विंडो खोलें
कंपाइल करने के लिए टाइप करें जीसीसी फंक्शन डॉट सी हाइफेन ओ फुन निष्पादित करने के लिए टाइप करें fun आउटपुट प्रदर्शित होता है
सुम ओएफ आ एंड ब इस 5 अब अपने प्रोग्राम पर वापस आएँ
फंक्शन्स में विशेष आइडेंटिफायर्स हैं जो पैरामीटर्स या आर्गुमेंट्स कहलाते हैं
अब आर्गुमेंट के साथ वही उदाहरण देखें
मैं यहाँ कुछ चीजें बदलूंगा
टाइप करें इंट एड इंट आ इंट ब यहाँ हमने एड फंक्शन घोषित किया है
इंट आ और इंट ब फंक्शन एड के आर्गुमेंट्स हैं
इसे डिलीट करें
यहाँ आ और ब को शुरू करने की आवश्यकता नहीं है
प्रिंटफ स्टेटमेंट को डिलीट करें
टाइप करें इंट main यहाँ एक वैरिएबल सुम निर्धारित करें
टाइप करें इंट सुम फिर टाइप करें sum add54 यहाँ हम एड फंक्शन दर्शाते हैं
फिर हम 5 और 4 के रूप में पैरामीटर्स पास करते हैं
5 आ में संचित होगा और 4 ब में संचित होगा
एडिशन किया जायेगा
परिणाम प्रिंट करें
टाइप करें printfसुम is160dnसुम इसे डिलीट करें क्योंकि हमने फंक्शन पहले ही दर्शाया है
टाइप करें रिटर्न 0 non वॉइड फंक्शन में रिटर्न स्टेटमेंट का उपयोग किया जाना चाहिए जो एक वेल्यू रिटर्न करता है
सेव पर क्लिक करें
प्रोग्राम को निष्पादित करें
टर्मिनल पर वापस आएँ
पहले की तरह प्रोग्राम को कंपाइल करें
निष्पादित करें
आउटपुट इस तरह प्रदर्शित होता है सुम इस 9 अब देखते हैं कि C में वही प्रोग्राम कैसे निष्पादित करें
अपने प्रोग्राम पर वापस आएँ
यहाँ कुछ चीजें बदलें
पहले Shift Ctrl और एस कीज़ एक साथ दबाएँ
अब फाइल को cpp एक्सटेंशन के साथ सेव करें
सेव पर क्लिक करें
पहले हम हेडर फाइल को आईओस्ट्रीम में बदलेंगे
हम यहाँ यूजिंग स्टेटमेंट को शामिल करेंगे
C में फंक्शन विवरण समान है
इसलिए यहाँ कुछ भी बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है
अब प्रिंटफ स्टेटमेंट को काउट स्टेटमेंट से बदलें
जैसे हम C में लाइन को प्रिंट करने के लिए काउट फंक्शन का उपयोग करते हैं
हमें यहाँ फॉर्मेट स्पेसिफायर और n की आवश्यकता नहीं है
कॉमा डिलीट करें
अब दो ओपनिंग एंगल ब्रैकेट्स टाइप करें
सुम के बाद पुनः दो ओपनिंग एंगल ब्रैकेट्स टाइप करें
और डबल क्वोट्स डबल कॉमा में बैकस्लैश nटाइप करें
इस क्लोजिंग ब्रैकेट को डिलीट करें
अब सेव पर क्लिक करें
प्रोग्राम को कंपाइल करें
अपने टर्मिनल पर वापस आएँ
टाइप करें g functionसीपीप o फुन1 यहाँ हमारे पास फुन1 है क्योंकि हम आउटपुट फाइल फुन को ओवरराइट नहीं करना चाहते हैं
एंटर दबाएँ
टाइप करें fun1 आउटपुट प्रदर्शित होता है160 सुम इस 9 अब हम कुछ सामान्य एरर्स देखते हैं जो आगे आ सकती हैं
मान लें कि हम 4 के स्थान पर एक्स टाइप करते हैं
मैं बाकी कोड को जैसा है वैसा ही छोड़ दूंगा
सेव पर क्लिक करें
प्रोग्राम को कंपाइल करें
हम लाइन न 10 पर एक एरर देखते हैं
इस स्कोप में एक्स निर्दिष्ट नहीं किया गया था
यह इसलिए क्योंकि एक्स एक कैरेक्टर वैरिएबल है
यह कहीं भी निर्दिष्ट नहीं है
और हमारे एड फंक्शन में एक आर्गुमेंट के रूप में इंटीजर वैरिएबल होता है
इसलिए रिटर्न टाइप रिटर्न प्रकार और रिटर्न वैल्यू रिटर्न वेल्यू में अंतर है
अब अपने प्रोग्राम पर आएँ
अब एरर को फिक्स करें
लाइन न 10 पर 4 टाइप करें
सेव पर क्लिक करें
फिर से निष्पादित करें
प्रॉम्प्ट को क्लियर करें
पहले की तरह प्रोग्राम कंपाइल करें
यह कार्य कर रहा है
अब हम एक दूसरी सामान्य एरर देखेंगे
जो आ सकती है
मानिए कि यहाँ हम केवल एक पैरामीटर पास करते हैं
4 डिलीट करें
सेव पर क्लिक करें
अपने टर्मिनल पर वापस आएँ
कंपाइल करें
लाइन नं 10 पर हम एक एरर देखते हैं
टू फेव आर्गुमेंट्स टो फंक्शन इंट एड इंट इंट अपने प्रोग्राम पर वापस आएँ
आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास दो पैरामीटर्स हैं
इंट आ और इंट ब और यहाँ हम केवल एक पैरामीटर पास कर रहे हैं
इसलिए यह एरर दे रहा है
एरर को फिक्स करें
4 टाइप करें
सेव पर क्लिक करें
टर्मिनल पर वापस आएँ
फिर से निष्पादित करें
हाँ यह कार्य कर रहा है
अब अपनी स्लाइड पर वापस आएँ
संक्षेप में इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा फंक्शन फंक्शन का सिंटैक्स बिना आर्गुमेंट वाले फंक्शन जैसे वॉइड add आर्गुमेंट वाले फंक्शन जैसेint addइंट आ और इंट ब एक नियत कार्य के रूप में एक संख्या के वर्ग की गणना करने के लिए एक प्रोग्राम लिखें
निम्न लिंक पर उपलब्ध विडियो देखें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
स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्यूटोरियल्स का उपयोग करके कार्यशालाओं का आयोजन करती है
उन्हें प्रमाण पत्र भी देते है जो ऑनलाइन टेस्ट पास करते हैं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
हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद